एक आदमी है जो ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

खेज में बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

नीचे पेपर भी है पेपर भी है और पीछे घर भी है।

कुछ सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं ऊपर पंखा भी है।

आलू आलू में मिट्टी लगा हुआ है।

एक लड़की है जो पीला कलर का ड्रेस पेहनी हुई है एक छोटी बच्ची है जो पीला कलर का क्लिप लगाई हुई है।

बहुत सारे लोग हैं सभी देख रहें हैं सभी अलग-अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं।

सभी अनेक-अनेक प्रकार के कपड़े पहने है चप्पल पहने हुए है।